इसमें चार पांच बंदे खड़े हुए है ये होटल जैसा लग रहा है।

चार पांच कुर्सियां है बाहर खड़ी हुई पड़ी हुई हैं इसके पास में एक बिल्डिंग है जिसकी खिड़कियां खुली हुई है लाइटें जल रही हैं।

बहोत सारे पंखे लगा रखे हैं बहोत सारी लाइटें ए_सी सारी व्यवस्था कर रखी हैं यहां पर बहोत अच्छे साफ सफाई करी हुई हैं।

यह एक दुकान है जिसका नाम राधे ज्वैल्स एंड क्लोज है यहां पे बहुत सारे अलग अलग तरह के कपड़े मिलते हैं।

लेडिस के लिए भी अच्छे कपड़े मिलते हैं यहां पर दो आदमी खड़े हुए हैं कुछ कपड़े बेच रहे हैं यहां पर अच्छे कपड़े मिलते हैं।

और वहां पर कुछ रैंके हैं वहाँ पर अख़बार बिछा रखे हैं यहां पर लाइटे जल रही है इलेक्ट्रिक बोर्ड नजर आ रहे हैं पंखा नजर आ रहा है।

जो बैनेन एक पर्पल कलर का है इसके पास एक दुकान है।

यहां पर भी ये पीले और रेड कलर की दीवार पेंट किया रखा है इसके आगे एक चौकी है बहोत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं।

यह एक दुकान है जहां पर फूल की मालाएं बेची जाती हैं यहां पर सफेद --

यह बीकानेर में कंडील नाम से जानी जाती हैं यहां पर हर तरह की मिठाई मिलती हैं ये अच्छी मिठाई की दुकान है।

कैंटीन है पानी का प्याऊ है।

मेरे को व्हाइट और ऑरेंज कलर की हैं।

यह एक होटल है जिसका नाम गणेश ढाबा फास्ट फूड है यहां पर पांच सात लोग काम कर रहे हैं।

यह लकड़ी के बनाए हुए प्रोडक्ट है जिसमें कुछ पशु पक्षियों को रखते हैं छोटे छोटे यह लकड़ी के बनाए हुए है।

जहां पर सित डाउन पे एक ब्रिज बना हुआ है यहां पर रेड कलर की सीढ़ियां व्हाइट कलर की सीढ़ियां हैं यहां पर दो बाइक खड़ी हैं।

बहोत सारे अंदर पेड़ पौधे लगे हुए है रंग बिरंगे--

बहुत सारी पोस्टर लगे हैं आगे बाइक खड़ी हुई है दो चार आदमी खड़े हुए हैं यहां पर अंदर जाने का दरवाजा बंद है।

यह एक चौपाटी का हैं यहां पर एक पेड़ लगा हुआ हैं दिल्ली फोर्ड डे एक कमरा बना हुआ हैं यहां पर नाव में बैठकर पानी में --

यहां पर छोटे बच्चे भी आए हुए हैं यहां पर एक अलग कमरा भी बना हुआ है एक रोड भी निकली हुई है इलेक्ट्री इलेक्ट्रिक के खंभे भी लगे हुए हैं।